दिखाई दे रही हैं जिसमें लीले नीले रंग की है।

शीशे का जिसमें एक आदमी फोटो खींचता हुआ दिखाई दे रहा--

एक पेंटिंग भी दिखाई दे रही है।

एक जीना भी चढ़ रहा है।

यह एक रेढ़ा दिखाई दे रहा है।

कुछ फल दिखा धरे हुए रखे हुए हैं।

पीछे एक आदमी भी दिखाई दे रहा है।

आलू भी दिखाई दे रहे हैं।

एक डॉक्टर के मुंह पर ब्लर लगा हुआ है।

कुछ एक पन्नी पन्नी लगी हुई है।

और एक कुर्सी पर एक आदमी में बैठा हुआ ह--

एक घंटी भी दिखाई दे रही है।

यह एक मोबाइल की दुकान है।

यह एक कोचिंग सेंटर --

जिसमें नीले रंग के गेट लगे हुए हैं।

और एक कुर्सी भी रखी हुई है और बाहर एक सीढ़ी और कुछ लकड़ी के पड़ा हुआ है।

टंगा हुआ है और बराबर में एक पेटी रखी हुई है।

फाइल्स और डी और डिब्बे भी रखे हुए हैं और उनके नीचे --

जिसके मुंह पर ब्लर लगा हुआ है।

उनके मुंह पर ब्लर किया गया है।